कुर्सियां भी रखी हुई है और एक--

कील दिखाई दे रही है और--

रहे हैं बहुत सारा जल भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक छोटी सी टेबल दिखाई दे रही है।

दे रहे हैं और बहुत सारी लाइटें भी--

कारखाने दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ आदमी --

इंडियन ऑयल पेट्रोल टंकी नजर--

बहुत सारे यात्रीगण आते जाते दिखाई--